एक लड़की ने मास्क लगा रखा है और एक मनी प्लांट का पेड़ दिख रहा है और एक गेट दिख रहा है।

लड़के ने जूते पहन रखे हैं और पहन रखा है और मार रहा है।

जो कुछ पेंटिंग वगैरह दिखा रही हैं अपने कॉलेज --

और एक इंसान दिख रहा है जो तबला बजा रहा है और ये किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं संगीत वगैरा हो--

और एक बिल्डिंग दिख रही है और काफी अच्छा मौसम है एक पेड़ दिख रहा है।

अच्छा सज रहा है काफी अच्छा दिख रहा है एक कुर्सी रखी हुई है कुछ टेबल रख दिया है।

यह एक खुला हुवा मैदान हैं जिसमें एक लाइट का--

इसमें तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यह एक मछली देख रहा है।

जिसने सिर पे ओढ़चा बांध रखा है।

झूमर लगे हुए हैं छत पर काफी अच्छा लग रहा है।

इसमें एक प पेड़ लगा हुआ है ग्रीन कलर का--

बलूनस लगे हुए हैं और नीचे एक फर्श पर रेड कलर की एक चादर बिछी हुई है और इसके बराबर मे ग्रीन कलर के पौधे लगे हुए हैं।

और इसके पीछे दो चेयर रखी हुई हैं और एक ड्रॉवर रखा हुआ है और एक कांच का शीशा लगा हुआ है।

सुबह मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ है इसमें आम भी रखे हुए हैं और इसमें सेब भी रखे हुए हैं।

और ऊपर काफी पंखा चल रहे हैं और लाइटस भी लगी हुई हैं।

काफी सारी पेंटिंग वाली दीवारें हैं और एक इंसान कुछ काम कर रहा है लैपटॉप पर--

ये एक दुकान है जिसमें टायर पर रखे हुए हैं बहुत बड़े बड़े टायर हैं।